बैठने के लिए लोगों के लिए जगह भी बनी हुई है कुछ छोटे पौधे लगे हुए हैं और कुछ बड़े-बड़े पौधे भी लगे हुए हैं।

कुछ पौधे पीले कलर के हैं और कुछ बोले ऑरेंज कलर के हैं।

एक पेटी मुझे दिखाई दे रही है और एक वाइट कलर का डब्बा मुझे दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह दिन का समय है और यहां पे ईंटों से बहुत सारी दिवाली बनी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये रात का समय है और यहां पे बहोत सारी लाइटे भी जल रही है।